ये तो एक रेस्टोरेंट है यहां तो अम्म्म ज्यादा लोग बैठके खाना खा रही है और यहां--

दीवार में न फोटो फ्रेम्स है वह तो ज्यादा दिखने के लिए ज्यादा अच्छा है और इसका यहां पर लाइट भी ज्यादा अच्छा हैं।

यहां तो तरह तरह की पेंटिंग्स है और यहां रेक्स में भी कुछ सामान है। ग्लास रैंक्स है या ज्यादा--

उम्म इसमें तो पुस्तक ज्यादा दिख रहा है और न्यूजपेपर्स भी हैं और प्लांट्स भी--

ये तो एक पार्क है यहां तो एक डस्टबिन है ग्रीन कलर का दिखा रही है को--

छोटे छोटे दिखा रही है पानी के पानी के अंदर और वहां दूर से ना अं--

ये फ्लोर यह सब कुछ ग्रीन में डाला हुआ है और वहां--

अ टेंट भी है और वह दो लोग बैठा हुआ है एक आदमी पिंक शर्ट और एक आदमी व्हाइट शर्ट पहे --

उम्म बाल्टी भी दिखा रही है फायर का और यहां तो एक ऊपर एक आदमी का--

और वह एक आदमी पिंक शर्ट पहना हुआ है और एक आदमी पीला शर्ट पहना हुआ है।

कंप्यूटर लैपटॉप है और वहां रैंक्स भी दिखा रही है और वह ब्लू कलर का दीवार दिखा रही है।

व वो खाने का कुछ प्लेट्स का अं दिखा रही है फोटो --

ड्रिलिंग काम कर रही है वो तो मिशन से ड्रिलिंग कर रही है बिल्डिंग को--

ये तो कुछ एलेक्ट्रोनिक शॉप हैं यहां तो तरह-तरह की बल्ब्स दिखा रही है इसमें तो तरह तरह की कलर्स हैं।

और इसमें टूथपेस्ट भी दिखा रही है और कुछ सामान दिखा रही हैं।